सड़क है जहां से लोग इधर उधर चल रहे है।

खड़ा हुआ है और एक आदमी सिलेंडर ले जा रहा है।

जिस शॉप में मुझे बाहर एक--

यहां मुझे एक शॉप दिख रही हैजिसका नाम है नातुराम एंड सन --

इनके पास बहोत सारे फल है जैसे सीताफल है किन्नी के पास नारियल है कच्चे नारियल है।

दो डॉक्टर हैं जिन्होंने हाथ में--

और लाइटिंग भी लगी हुई है इनका देखने के लिए इनको--

और इनके साइड में बहुत सारी मशीनें भी रखी गई है।

रोलर फ्लोर मिल्स शिमलाबस स्टैंड के नीचे--

यहाँ मुझे ये क्लासरूम दिख रहा है जहाँ बहोत सारे बच्चे बैठे है।

यहां पर एक नेता मुझे दिख रही है जो--

यहाँ पर चार पाँच लोग और रास्ते में एक स्ट्रीट लाइट भीं लगी हुई है।

और यह फोटो ले रहा हैबड़े अच्छे तरीके से इसने लाल रंग की टोपी पहनी हैजिसमें लिखा हैबॉय और लाल और ब्लैक चकदार--

हा लड़के आये हैं जिम करने आए हैं यहां पर और मुझे बहोत सारे यहां पर मशीनें दिख रही हैं जिम में।

और मुझे लोहे का एक छोटा जैसा पोल भी दिख रहा है इसके साथ में--

इस पार्क में बेंचेस लगे हैंबैठने के लिए कुछ लोग तीन लोग--

और रंग के मास्क लगाए हुए हैं।

यहां मुझे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिख रही है।

कंक्रीट सरिए पर बिछाई जा रही है सरिया--

और एक मुझे घर दिख रहा है जिसकी लिताई पुटाई--

और यहां पर बहुत सारे सूट जो है।

बहोत सारी हिरने यहां पर मुझे दिख रही है।

जहां पर यह बैठे बैठने की इनकी सीट है यहां पर कुछ पीने के लिए इन्होने रखा हुआ है सीट पर --

और इसके सामने कुछ लोग आ रहें हैं कुछ जा रहें हैं।

यहां मुझे बहुत सारे टायर दिख रहे हैं।